ये एक बस है जो कि ओम ट्रेवल्स की है ये बस को फूलों से सजाया गया है।

ये एक रोड है जिसके आ साइड में दो टपरी नज़र आ रही है।

चक्के को उठाने के लिए एक मशीन चक्के के नीचे लगाई गई है एक चक्का निकाल दिया गया है एक इंसान है जो कार के नीचे जा के कार को ठीक कर रहा है।

बीच में एक घड़ी नजर आ रही है आस-पास मार्केट नजर आ रहा है।

ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है जहां साइड मे एक ए.टी.एम. दिया हुआ है स्टेट बैंक का --